मजबूल काम करते हुए नज़र आ रहे है जिन्होंने नीले रंग--

इस तस्वीर में समाने लगी हुई सीनरी बहोत ही सुंदर है।

और इस रेल ट्रैक पे कितनी सफाई और सुथराई है।

ये एक ऑफिस है जिसमे सभी लड़के और लड़कियाँ

यह एक सिनेमा हॉल के बाहर की तस्वीर है।

खाना पीना कर रहे है और कुछ लोग गपशप भी करते हुई दिख रहे है ।